एक टेबल है जिस में ओम साईं ओम लिखा हुआ है।

सामने साइड एक बहुत बड़ा पेड़ है जो हरे कलर का है सामने नीची साइड एक छत्ता वो छतरी है जो लाल कलर का है जिसमें फल फूल बेचा जा रहा हैं।

यहां पे फर्श है फर्श में सफेद कलर का लाइनिंग बना हुआ है अगल बगल दीवार है दीवार में हरा कलर और नीला कलर का पोतई हुआ है पीछे सफेद कलर का एक बड़ा कार है कार सफेद कलर का--

एक इंसान है जो हाथ में कुछ फेहराया हुआ है उसके अंदर भी काफी सारे लोग हैं।

यहाँ पर काफी सारे पत्थरे है पत्थरो के बीच मे काफी सारे लोग है जो पत्थरो को बीच से पानी चल रहा तो उसमे नहा रहे है पीछे साइड पहाड़ है पहाड़ काफी बड़ा है पहाड़ में काफी सारे पेड़ पौधे लगे है जो काफी बड़े है और हरे भरे हैं ।